वे रंग-गोली बनाते हुए देख सकते हैं।

यह एक नदी के तट की तस्वीर है इसमे कई लोग नदी के अंदर नहाते हुए एवं बाहर आते हुए नजर आ रहे।

यह एक दुकान की बाहर की तस्वीर है जिसका नाम स्वे --

गैरेज के बाहर हमे एक मोटरसाइकिल खड़ी दिख रही है जो कि काले रंग की है।

दोनों शख्स हथोड़ी से प्लास्टर को ठोक रहे है।

इस तस्वीर मे एक शख्स टेबल पर लेटा नजर आ रहा है।